वो पोस्टमैन के द्वारा --

ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर बोहत सारे लोग आते हैं अपने फॅमिली अपने फ्रेंड के साथ।

और यहाँ पर फोटोग्राफी शूट कराने पे बोहत ही अच्छा फोटो आता है।

ये सर्विस सर्विसिंग का शॉप है जहाँ पर की सर्विसिंग किया जाता है और यहाँ पर टू वीलर थ्री वीलर फोर वीलर सब यहाँ पर सर्विसिंग किया जाता है।

और एडवांस भी पेमेंट --

और इससे आने जाने में काफी सुविधा होती है।